देख सकते हैं यहां पे एक आदमी बहुत सुंदर यहां पे एक आदमी है इसके सामने गुलदस्ता रखा हुआ है ये लाइट है पार्क है शादी विवाह का माहौल है चारों तरफ सजावट है बहुत सुंदर डेकोरेशन है छोटे-छोटे एल.इ.डी. लाइट लगी हुई है।

यहां पे बहुत सुंदर डॉल है और ये डॉल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है गुड़िया इसको कहते हैं बच्ची लड़कियां इससे बहुत खेलती है डॉल डॉल बहुत क्यूट दिखाई दे रहे हैं कपड़ा पहना हुआ है।

चॉकलेट है बहुत सुंदर यहां पर गाड़ी दिखाई दे रहे है कार सड़क पर आ रही है एक स्कूटी है और यहां पर केक वगेरह ठन्डे वगेरह मिलते हैं पेप्सी वगेरह।

बहोत सुंदर हॉल है बहोत सुंदर ए सी वगैरह भी लगी हुए है और सेंसर है और होटल जैसा दिखाई दे रहा है। इस पर बहोत सुंदर पेंटिंग की हुई है दीवाल पे पंखे लगे हुए हैं और बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।